अभी ये ठीक होने के लिए अभी खुली हुई है पूरी।

इस वीडियो में कुछ बहुत सारी औरते दिखाई दे रही है।

और कंच की दीवार सी लगी हुई है।

और यहां पे खेलने का बच्चों का वह भी लगे हुए स्लाइड ।

और दान पत्र भी रखा हुआ है और अंदर रेलिंग लगी हुई स्टील की बहुत मस्त रेलिंग लगी हुई है वाॅव वेरी गुड।

मड़ीई के अंदर एक कार खड़ी है और कुछ घास भी बांध के रखा हुआ है गठरी में।

यहां पे दुकान में अंदर सामान मिलता है।

बहोत सारी पब्लिक दिखाई दे रही है भीड़ लगी हुई है।

बहोत सारे खिलौने रखे हैं टेडी बेयर रखे हैं।

यह किसी क्लीनिक का फोटो है।